ये एक फुटबॉल ग्राउंड है | यहाँ पर देख सकते हैं तीनो अथी सब फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं ।

मुली यहाँ पर लगे हुए हैं मुली सफ़ेद रंग की होती है इसे खाने में बहुत ही --

आगे बहुत ही सुन्दर सा इसका भी दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है देख सकते हैं यहाँ पर --

सुन्दर सा इसका जो दृश्य हैयहाँ पर दिखाई पर रहा है और इधर एक बाइक भी यहाँ पर --

सजाया गया गेट नंबर फॉर यहाँ पर लिखा हुआ है फिर से यहाँ पे एक पुलिस भी है और --

इसलिए इन लोग पेंट कर दे रहे है और --

फोटो खींचा है अपना उम्म बहुत ही इमेजिन यहाँ पर जीम जो होती यहाँ पर जीम जॉइन कर --

यहाँ पर दिखाई पर रहा है देख सकते हैं बहुत ही स्टार छोटे-छोटे स्टार का --

सुन्दर सुन्दर मोटरसाइकिल और बहुत ही अच्छे दामो पर यहाँ पर आपको मिलती है देख सकते है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ ।

यहाँ पे कुछ आयोजन किया गया है क्यूकी जैसा की धुआँ वगेरा उठा रही है | शायद कुछ पूजा हो रहा है |

सुन्दर सा साइड साइड में बना दिया गया है ताकि कोई गी मतलब कुछ गिर ना जाये और यहाँ पे गेट भी लगा दिया गया है बहुत ही सुन्दर --

यह एक शायद आर्मी के के लिए के लिया गया है।

और तलवार वगेरा यहाँ पर रखी हुई है देख सकते हैं |

क्रोश हो रही है और देख सकते है रोड के साइड से पानी वगेरा गिरा हुई हैदूसरे साइड से रोड दिख रही है ।

लगाया गया है बहुत ही सुन्दर सा इसका जो दृश्य है यहाँ पर --